इंडस्ट्री के बाहर अ रोड है रोड पे एक होर्डिंग लगी है.

अ पीछे एक बिल्डिंग को अ ग्रीन कपडेसे ढका हुआ है.

और कुछ इंसान बातें कर रहे है कुछ बुक खरीद --

पेडिग्री वाला शॉप है पप्पीज के खाने का भी शॉप है खाने का ही सब सामान है।

सब्जी अ सब्जी की शॉप है।

बॉर्डर ऐसे दिख रहा है अ और झाले लगी है।

हां सूखा सूखा पड़ा है नदी है एक साईड --

दो फैन जल रहे हैं एक एक लाईट की ट्यूब लाईट जल रही है थोड़े स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं।

कैफ़े एन_ एच की ओपनिंग है ऊपर सीडी से ऊपर जाना है.

पीछे सारे प पिक्चर पेंटिंग्स लगे हुए है.

और जंगल जैसा एरिया है झाड़ है.

रेलवे स्टेशन है ये बोहोत सारी सढ़ियाँ हैं सीढ़ियों पे टेबल मैट है डोर मैट है।

ऊपर जाने के लिए ऊपर आसमान है तार है तार का खंबा है.

ग्राउंड है ग्राउंड के सामने गेट से ना जाने वाला एक गेट बंद है।

जिम है जिम के इक्विपमेंट्स है.

और सबकी बोटले रखी गयी है और पानी की बोटले है.

मच्छी बाजार है मच्छी बाजार में सारी अलग अलग टाईप की मच्छी बेच रही है।

दो बाईक दिख रहे है ओनिडा का और टाटा स्काई का होर्डिंग दिख रहा है।

गेट बंद है हॉटेल का हॉटेल का नाम विस्टा पैलेस है.

सुपर मार्किट है सारा सामान रखा गया है रैक है।